सामने एक आदमी बैठा है जिसकी शर्ट का कलर ब्लू है।

प्रोडक्टस इसमें यूज करते हैं इसमें जिम करने का है एक पीछे जिम कर रहा है कोई।

सड़क हैं पत्थर हैं पौधे हैं व्हाइट एंड पिंक कलर के पौधे हैं।

प्लेन का कलर ब्लू है प्लेन के उस तरफ पेड़ का कलर ग्रीन है इस तरफ।

और इसके गेट का कलर व्हाइट है खिड़की का कलर व्हाइट है इसमें एक व्यक्ति --

कुर्सी का कलर ऑरेंज है टेबल का कलर ब्लैक और ऑरेंज है।

जिसपे येल्लो कलर से कुछ येल्लो एंड ग्रीन कलर से कुछ लिखा है ब्लैक कलर की खिड़की है उसके आसपास ग्रीन कलर के पेड़ पौधे हैं।

और एक डिपार्टमेंट है जो कि ब्राउन कलर का है स्कूल का कलर व्हाइट है उसका गेट ब्लैक है।

हॉस्पिटल का कलर ऑरेंज विथ ब्राउन है हॉस्पिटल के आगे एक व्हाइट कलर की वैन है।

काय ब्लू कलर की दीवार है एक ग्रीन कलर --

रेड कलर का हैं ए पर हाथ कर रखी है पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक हैं।